ये एक मंदिर है जैसा दिख रहा है। मंदिर बहुत ऊंचा है बहुत बड़ा है। अगल -बगल में पक्के का घेरा अ मतलब खाली जगह है। उस में लोग परिक्रमा करते हैं ।

नीचे सभी आदि लिखा हुआ है।

प्रकाश पेट्रोलियम हम भी पेट्रोल डीजल का--

ये एक बस स्टैंड जेसा लग रहा है। यहाँ पे एक बस खड़ी है जिसमें जय माँ दुर्गा लिखा हुआ है। ये वाइट कलर का बस है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं।

कारखाना है जैसे लग रहा हैं। यहाँ पे दो लोग हैं।

कारखाना दो छत का है जैसे लग रहा है या फिर एक ही छत का होगा।

ये फेडरल बैंक है बैंक मे लोग कैश भी निकालने के लिए आए हुए है। ये बहुत बड़ा बैंक है।

और नारियल के छोटे- छोटे पेड़ भी है बेर के पेड़ भी है पेड़ भी है और लोग यहाँ पिकनिक करने आये है घूमने के लिये और मैदान भी एक दम हरा-भरा लग रहा हैं।

ये एक जगह है।

यहाँ पे छोटे-बड़े पौधे है। झाड़ीदार पौधे है छावदारफलदार पौधे हैपेड़ है और बहुत सारे कलर फुल घास है।

तार इधर-उधर फैले हुए है। और बहुत बड़े-बड़े पेड़ है। झंडा टंगा हुआ है ।

लोहे का खम्भा-खम्भा गड़ा हुआ है। घर अलबेस्टर का घर ये है बहुत--

ये एक हॉस्पिटल है लग रहा है। हॉस्पिटल में नर्स और डॉक्टर लोग सेल्फी ले रही हैं ।